यहां पर हम देख रहे है कि एक मकान की छत बनाई जा रही है जिस पर बहुत सा लोहा बिछाया गया है।

कई म-मजदूर मिस्त्री जो काम कर रहे है रेते ईट गिट्टी सीमेंट मिला रहे है और कुछ व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहे है सामने एक दीवार व्हाइट कलर की --

दिख रहे है मंदिर के ऊपर बहुत से रंग बिरंगे गजरे दिखाई दे रहे है कुछ व्यक्ति है जो की गजरों को पकड़े खड़े हुए है।

जो की कुछ बुरखा पहने हुए हैं कुछ रंग-बिरंगे कपड़े में दिख रहें हैं दो व्यक्ति हैं जो हाथ मिला रहें हैं।

यहाँ पर हमें एक ग्राउंड दिख रहे है जिसपे चार पाँच व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो चल रहे है और बहुत से बाइके भी दिख रहे हैं सामने एक बिल्डिंग मे एच.डी.एफ.सी. बैंक है।

जहाँ पर नीली पट्टी पर दीवार पर लिखा हुआ है ऊपर हरा कलर दिख रहा है।

उसमें चाय जैसी दिखाई दे रही है और ये व्यक्ति रेड व्हाइट कलर की टी-शर्ट पहने हुए हैं।